ये छोटे छोटे मंदिर से बने हुए है यहाँ पूजा हो रही है अ यहाँ बहुत सारी लोग बैठे हुए और खडे भी है।

ये बलून्स देखने मे कितने मस्त है रेड यहा यहा पर्दा भी लगा हुआ है और बलून्स भी है।

लाइट भी देखने को मिल रहा टाइल्स भी लगे हुए है।

पीछे मूर्ति खड़ी है और एक हॉल है जो पीले कलर मे है और पंखे भी लगे हुए है।

यह बालून्स देख रहे होंगे रेड कलर मे दिल बना हुआ है यहाँ डले भी है नीचे ऊपर भी लगे हुए है।

ये फ़ैक्टरि है दिख रहे है ये पाइपे लगी हुई है।

और यहाँ बहुत सारी लोग बैठे भी है और ये पंखा देख रहे होंगे और एक बलून्स देख रहे होंगे रंगीबेरंगे।

मुझे लोग देख रहे होंगे और यहा फिश वगैरा लगी हुए है और यहा नापनेका बाट भी रखे हुए है यहा पर--

इन अंकल और बच्चों को देखिये और ये आंटी लोग खड़ी हुई हैं पिक साड़ी पहने है और अंकल ने व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं और ब ब्लू पैन्ट और यहाँ सीमेंटेड नहीं है इटे ईटों का बना हुआ है बस।